यहां पर बहोत सारे फूल भी उगे हुए हैं जिसमे फूल का कलर लाल गुलाबी पीला और लाइट पिंक भी है।

यहां पर बहुत सारी छोटे छोटे फूलों के आगे बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस जमीन को पूरे में बाउंड्री किया हुआ है जिसमें एक साइड बाउंड्री का कलर व्हाइट है और एक साइड सीमेंटेड दीवार है।

यहां पर दीवाल की कलर येलो और सीलिंग का कलर वाईट है यहां पर एक घड़ी भी दिखाई दे रही है।

अपर कंस्ट्रक्टर ने वाइट कलर की टोपी और जैकेट पहन रखी--

यहां पर बहुत सारे पिलर भी बनाए गए हैं जिनके ऊपर रॉड दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे ईंट इधर उधर बिखरी हुई है।

यह एक मछली बाजार की फोटो है जहां पर बहुत सारी छोटी और बड़ी मछलियां बेची जा रही हैं।

इस तस्वीर में जमीन पर एक ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारी वायर रखी हुई है जिसमें वायर का कलर ग्रीन और ब्लैक है।

इस तस्वीर में बहोत सारे फ्रेम लगे हुए हैं यहां पर एक घड़ी भी लगी हुई है।

यहां पर एक येलो कलर की बिल्डिंग बनी हुई है।